जैसे फोटो में दिख रहा है डॉल्फिन डांस एकेडमी का कोई एकेडमी है डांस अकैडमी .

जिसके सुंड पर एक आदमी बैठा हुआ है.

यह तस्वीर में एस एम कॉलेज हाजीपुर को दर्शाया गया है.

जिसके सामने कुछ हरी भरी घास दिख रही है।

यहां एक मकान है जिसमें बहुत सारे संगणक रखे हुए हैं.

यह एक स्कूल या कॉलेज जैसा प्रतीत हो रहा हे.

दो आदमी अंदर की और जा रहे ए --

यह एक सेलून है जिसमें तीन कांच और तीन कुर्सी लगे हुए हैं.

यह एक ऑफिस जैसा प्रतीत हो रहा है जिसमें कंप्यूटर दिख रहा है।

यह एक कमरा हे जिसमे एक एल_इ_डी लगा हुआ हे.

एक दिवाल की तरफ सीसे से बनी दीवाले कुछ नजर आ रही हे.

क्लास में एक सफेद बोर्ड लगा हुआ है.

यह एक सोनी ब्रांड का दुकान नज़र आ रहा है.

दुकान गुबारों से सजी है गुबारा सफेद और ब्लू रंग का है.